फॅमिली इधर पे घूमने आए है और इधर पर बतख बैठी हुई है म-पत्थरो पे--

यह एक बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक ऑफ बड़ौदा का ए_टी_एम है जहां पर ए_टी_एम लगा हुआ है। इधर से लोग रुपए निकालने के लिए आते हैं दूर-दूर से जब उन्हें ज़रूरत होती है।